उसपे दो फूल बने हुए हैं और एक गुलाबी कलर का केक रखा हुआ है और --

एक रोड गया है रोड प र कुछ व्यक्ति साइकिल से आ रहे हैं कुछ साइकिल खड़ी हुई हैं और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं एक पेड़ है पेड़ के नीचे।

हेयर कटाई से यहां पर कटाई की जाती है।

कुछ रास्ता गयी है अगल बगल का बहुत हरा भरा हुआ है बहुत सुन्दर सा लग रहा है आगे जा कर एक--

हमरी यहाँ सभी प्रकार के पुस्तके स्टेशनरी सम्बंदित सभी सामग्री

बहुत बड़ी नदी है नदी में कुछ बहुत सारे लोग--

यह रोड रोड पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक जनरेटर भी रखा हुआ है कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं दुकानें खुली हुई हैं।

नाव मे बहुत सारे लड़के है जो नाव से तैर रहे है चार पाँच नाव दिख रही है ।

यहाँ नवो है नवो बहुत बड़ी बड़ी नवो है जिसमे बहुत सारे लोग बैठे है और एक जेंट्स--